इहां एगो बड़का बिल्डिंग बा इहां इहां बहुत ऑटो ई सब लगल बा।

इहाँ एगो बड़का पुल बा पीछे भी पुल बा इहाँ देखला पर तीन चारगो पुल बा।